मुझे इस फोटो पर होटल पवन दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर ग्रीन चादर दिखाई दे रहा है।

पेड़ भी दिखाई दे रहे--

मुझे इस फोटो को देखकर एक वाइट कलर का मंदिर दिख रहा है।

मुझे इस फोटो पर पिंक और रेड और येलो और ब्लैक कलर के गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं।

कर आधार कार्ड मनी ट्रांसफर नॉमिनेशन जय जाति निकास खतरा खतौनी --

मुझे इस फोटो को देखकर दो मार्शल फोर व्हीलर दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो पर पांच चार चेयर दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस फोटो पर चार व्हाइट कलर की लाइट भी दिखाई दे रही है।

मछली की बजार दिखाई दे रही है।

बैठने का भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो को देखकर एक बीच से रास्ता गई हुई है।

मुझे इस फोटो को देखकर मैदान दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर एक पोस्टर दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर एक रोड दिखाई दे रही है।

स्काय ब्ल्यू कलर के गुब्बारे से सजा हुआ है।

मुझे इस फोटो पर दो गाड़ियां दिखाई दे रही हैं।